यह एक पेट्रोल पंप का पिक्चर है यहाँ पर दो पिलर दिख रही है उसपे स्लेट पड़ी हुई है --

इंतजार कर रहे है और कुछ लोग बेठ कर कुछ लोग लेट कर इंतजार कर रहे है।

और यहाँ जहाँ गाड़ियां खड़ी हुई है यहाँ पर कई जगह पानी भी भरा हुआ है और इनके आसपास कई पेड़ भी लगे हुए है।

और साइड में यहा पर एक आदमी येलो टीशर्ट पहनकर खड़ा है जिसका हाथ दिख रह है और आसमान --

चेयर पड़ी है और कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए है एक साइड में बाइक भी खड़ी है।

और यहाँ पर साइड में कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग बेठे है ट्रेन का इंतजार कर --

यह एक स्टेशन का पिक्चर है जहाँ पर अभी स्टेशन पूरा खाली है कोई भी नहीं दिख रहा है और अभी ट्रेन भी नहीं आई है।